यहां एक मैदान में एक आर्मी पर्सन खड़े हैं।

और वहां मैदान में कुछ आर्मी वाले लोग अपनी मार्च पास्ट वगैरह कर रहें--

और कछुओं के साथ में एक भी रेड कलर का बैठा हुआ है।

कुछ डेकोरेशन का सामान भी बाहर पड़ा है और सोफा बहुत सुंदर है।

और यहां पर खुला आसमान नीला और सफेद में--

अगल बगल में काफी खुला मैदान और घास वगैरा--

और ये एक खेल का मैदान दिख रहा है यहां कि--

राइट साइड में भी कुछ सामान रखा है सेल्फ में--

स्कूर में एक सामने बिल्डिंग नजर आ रही है दो मास्टर भी खड़े हैं।